यह एक मंदिर है मंदिर के ऊपर त्रिशूल बनाया गया है इसके साइड में चार राड निकले हुए हैं।

यहां पर एक आदमी कचरा साफ कर रहा है उसके साइड में एक बेंच रखा गया है।

यहां बहुत सारे पेड़ भी है कुछ घर है।

यह एक दुकान है इसमें एक आदमी बैठा हुआ है जिसने येलो कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

एक साइड में लेडीज टू लेडीज बैठी हुई हैं एक बच्चा भी है जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

दो आदमी भी है जिसमें एक ने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

उसके साइड में कुछ आदमी सब है एक आदमी चाय के स्टॉल पर खड़ा है जिसने ब्लैक कलर का टी-शर्ट पहना हुआ है।

यहां पे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं।

यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैंइसमें से एक बैनर लगाया गया हैजिसके ऊपर प्रणाम लिखा हुआ है।

यह एक स्विमिंग पूल है इसमें एक आदमी खड़ा है।

यहां पे हमे मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक रूम बनाया हुआ है उसके ऊपर लिखा गया है रेड कलर का बेनेट से एस पी इलेक्ट्रिकल्स ।

इसके साइड में बहुत सब पेड़ भी हैं एक अ इधर साइड में बहुत सारे पख्खल भी--

कुछ साइड में स्कूल भी है जिसका कलर येलो है उसके में बहुत सारे पिल्लर भी है।

यहां पे सीढ़ियां दिखाई दे रही है सीढ़िया में एक आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है।

उसके साइड में एक और बोर्ड लगाया गया है जिसका कलर व्हाइट हैउसमें भी लक्ष्मी गार्डन लिखा हुआ है।

अब एक मूली भी बांधती है लड़की और लड़की ने दूसरे हाथ मे एक कंगन पहना हुआ है।

यहां पे कुछ स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें से स्टूडेंट ने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

इसके साइड में आदमी ने व्हाइट कलर का टी_शर्ट और ब्लू को ब्लैक कलर का जींस पहना हुआ है औरत ने ब्राउन कलर की साड़ी पहनी है।